और ये देखने में भी बहोत ही सुंदर दिख रहा है। ये चित्र और यह ड्रेस भी लग रही है।